इस इमेज में हम सबसे आगे रोड देख सकते हैं जोकि पक्की रोड है।

इस इमेज में हमको अल्युमिनियम का दरवाजा दिख रहा है जिस पर दूसरा वेरिएशन शीशे का दिया गया है।

मिट्टी के मूरत के अंदर हम गौतम बुद्ध को ध्यान मुद्रा में देख सकते हैं।

इस मंदिर के आसपास हमें कई सारे छोटे बड़े घर दिखाई दे रहे--

सामने ही हमें एक आदमी उसी दिशा में दिखाता हुआ भी दिख रहा है।